--और बड़ी अच्छा-अच्छा सिस्टम का है जो कि दिखने में बहोत अच्छा लगता है उत्ते पैर से भी करने वाला है हाथ से भी करने वाला है जो की दिखने में बहोत मस्त और अच्छा है।

घर है और घर देखने में बहुत बड़ा है और इसमें शीशा लगे हुए खिड़की--

और यहाँ पर दो पुलिस है जो की ग्राउंड में खड़ा है जो की दिखने में बहुत अच्छे लग रहे है यहाँ पे ग्राउंड जो है बहुत सारे पेड़-पौधे है जो की लाइन लगाके के गए है और हरियाली दिखने में लग रहे है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

घर है और घर में कुछ बोर्ड टंगी हुई है और यह घर का डिजाइन भी काफी अच्छे लग रहे है।

और समुन्दर का साइड मे जो है हर-भरा दिख रहे हैं किनारे पौधे जो कि दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और सुनसान जगह है रोड पे मोटरसाइ --